ड्राइंग बना रहा है और यहाँ पे --

यह चोरी करते समय पकड़ा गया और यह टीचर बोल रही है कि ऐसा मत करो--

ठंडा का मौसम होने के कारण सबको बाहर में बिठाया हैं।

उस साइड पर थ्री व्हीलर इस साइड ओर आते हैं |

दादी लोग दीदी लोग सब कोई वेट कर रहा है ट्रेन का --

चट्टानों के बीचो-बीच से बबुल का पेड़ ओड़--

एक कदम स्वच्छता की है और यह एक --

ये बैंक और ए_टी_एम नजदीक में है और यह बैंक की --

और यहाँ पे काफी सारे आदमी आया लेने के लिए--

और यह बाजी बोल रहा है यह मछली कितना --

और यह भाई साहब बोल रहै है दो सौ रुपया रेट में मिलेगा--

यहाँ पे काफी सारे गुब्बारा वगैरह लगाया हुआ है।